यहाँ पे चारो साइड में सीसा लगा हुआ हैं और वो भी देख सकते हैं इसमें--

और यहाँ पे काफ़ी सारा पेड़ लगा हुआ है हमको तो हमको तो देख सकते है।